सब कफ में डिजाइन भी बने हुए हैं।

यहां पे एक बहुत से लैंप व्हाईट कलर के लैंप हैं और लाइट वाले बल बॉल हैं।

और बगल में केले का पत्ता दिख रहा है उसके बगल में पानी--

एक बांस है और टीना का दुकान हैं ऊपर टीना हैं और बांस है।

सभी को ग्लास या कभी को ग्लास पे ग्लास रखें।